सभी बेड की लकड़ी का रंग काला है और --

दो लोग ऑटो पे कुछ काम कर रहे है। एक आदमी आगे खड़ा है ऑटो के और एक आदमी ऑटो के--

यहां पे बहोत सारी हरी भरी घास लगी हुई है।

बिल्डिंग है बिल्डिंग बहुत चौड़ी सी है।

बंधन बैंक बंधन बैंक बंधन बैंक ए_टी_एम और सोहिन एक पे लिखा है कोटक महिंद्रा बैंक ।

टेबल ब्लैक रंग का है पर बीच से ये येलो रंग का है तीन कुर्सियां लगी है जो दूसरी तरफ की मुंह किए हुए हैं ऊपर एक --

और बहोत सारी कुर्सियां लगी हुई है।

फोटोस लगी हैं दोनों फोटोस दो लड़कियों की हैं।